काफी अच्छी साज सजावट की हुई नजर आ रही है इस पिक्चर में।

पार्किंग वगैरह मुझे दिखाई देती हुई नजर आ रही है।

और आसपास में घास फूस है जहां पे इसके वजह से हरियाली ही हरियाली नजर आ रहे--

बाहर के साइड ही चारों तरफ जो मतलब आगे का एरिया है वहां पे घास--

और यहाँ पे अ एक यहाँ पे ये टॉय ट्रेन जैसी कुछ नज़र आ रही है मुझे।

चार लोग आगे की तरफ चल रहे हैं जिनके राइट साइड में--

और यहां पे कुछ लोग भी हैं जो यहां पर भरमार में बैठे हुए नजर मुझे आ रहे हैं चारों तरफ से।

और यहां पे लिखा है प्रशासनिक भवन।

यहां पे ये एक पार्किंग एरिया जहां पे गाड़ियों को पार्क किया गया है चारों तरफ में पार्किंग ही पार्किंग नज़र आ रही है और गाड़ियों के यहां पे बड़े अच्छे तरीके से पार्क किया गया है देख सकता हूं मैं।

और मैं देख सकता हूँ पीछे कुछ गाड़ियाॅं पार्क की हुई हैं और ये जो कुछ गाड़ियाॅं हैं यह व्हाईट और --

तकरीबन गाड़ियां व्हाइट और सिल्वर कलर की हैं जो सबसे आगे गाड़ी नजर आ रही है वह इनोवा की गाड़ी नजर आ रही हैं।

एक लड़का है जो यहां पे ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है पिक्चर में--

और वो पानी से बाहर आते हुए बिलकुल साफ साफ हम देख सकते हैं।